यहां हॉस्पिटल का दृश्य दिख रहा है।

कुछ सामानें रखी हुई हैं नीचे ऊपर से धूप आ रहा है।

बगल में वाटर बोटल रखा हुआ है परदा लगाया हुआ है।

यहां पर सीमेंट दुकान का दृश्य दिख रहा है शटर लगाया हुआ है ब्लू कलर का।

उपर करकट से छाया हुआ है बगल में दीवाल है दीवाल व्हाइट कलर का है।

नीचे कुछ दुखने भी है जिसमें डब्बा रखा हुआ है।

बहुत सारा एक्सरसाइज करने वाला मशीन रखा हुआ है।

बगल में रोड रखा हुआ है दीवाल व्हाइट कलर का है।